यह एक नदी का दृश्य है इस नदी में बहुत ही पानी है और एक लड़का पत्थल पर उस नदी में बैठा हुआ है।

पास में जंगल पहाड़ भी हैं और बादल का भी मौसम बहुत बेहतरीन किया हुआ है।

यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का दृश्य है इस बिल्डिंग का नेम लिखा हुआ है बालू घाट इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है।

एक बर्गर का पेड़ भी है उस बर्गर के नीचे एक लड़का बैठा हुआ है।

यह एक मार्बल दुकान का दृश्य है इस मार्बल दुकान में रेड कलर का मार्बल है और वाइट कलर का भी है।

इस रास्ते में टाइल्स का ही प्रयोग किया गया है और गेट भी शीशे का लगाए हुवे जिसमें रेस्टोरेंट थ्री सिस्कटी लिखा हुआ है।

जिसमें एक बोतल रखा हुआ है और इसमें पंखा भी लगाया हुआ है।

इसी दीवाल में चित्र भी बहुत तरह के लगाए हुए हैं।

चट्टान भी यहाँ बहुत सारे है और गूफे भी है और कुछ लेडिजियाँ भी है और कुछ लड़के भी है।

इसका एम_आर_पी भी तरह तरह के है जिसका एक एम_आर_पी है तीन सौ पचपन और एक तीन सौ पचहत्तर।

इसमें पंखे भी हैं और बैलून का सजावट भी किया गया है।

और इसके पास में बहुत सारे पिलर भी हैं और हर पिलर पे एक एक पंखा भी लगाया हुआ है।

यह एक बहुत ही बड़ी हॉल का दृश्य है इस हाल में बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं।

इस इस ऑफिस में सा एक खिड़की खुली है और बाकी खिड़कियां बंद है।

और एक ब्लू कलर का इस दुकान मे पाइप की तरह कुछ अंदर जा रहा है।

यह एक शादी समारोह का दृश्य है और इसमें फूल का सजावट बेहतरीन तरीके से किए हुए हैं।

यह एक दशहरा पूजा का दृश्य है और इसमें तीन मूर्तियां रखी हुई है एक बड़ा मूर्ति है और दो उसके पास में छोटे छोटे रखे हुए हैं।

और इसमें फर्श के नीचे टाइल्स का प्रयोग किया गया है और इसके इसके ऊपर में भी ल लाइटिंग का भी प्रयोग किया गया है।

यह एक शादी समारोह का दृश्य है इसमें फूल का प्रयोग किया गया है और उस फूल से बहुत सी सजावटें की गई है।

और इसमें झालर का भी प्रयोग किया गया है इसमें लाइटिंग भी तरह तरह के लगाए हुए हैं।

तथा इसके बैनर पे कोठास नाम है और इसके आस पास लोहे का भी सामान रखा हुआ है।